लग रहा है जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम होने वाला हो और बैलून के ढेर के पास एक आदमी सफेद टी शर्ट पहने भी दिख रहा है।

एक ऑफिस दिख रहा है और ऑफिस में एक लड़का काम करता हुआ भी दिख रहा है जो हाथ में चाय का कप लिए है और कुछ टेबल पर फाइल वगैरह रखे है।

यहां सामने एक गार्डन दिख रहा है गार्डन में टेबुल कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है और एक आदमी सफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां सामने एक बुक सेंटर दिख रहा है बुक सेंटर में बहोत सारी पुस्तकों क्रम में रखे हुए दिख रही है और बुक सेंटर में लोग आते-जाते भी दिख रहे हैं।

नदी के चारों तरफ पेड़ पौधे व हरियाली नज नजर आ रही है। और नजारा बोहोत सुंदर लग रहा --

और एक बच्चा पुस्तक लेता हुआ भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बच्चों की पुस्तकों का कलेक्शन बहोत अच्छा हो।

नदी बोहोत गहरी मालूम होती है। नदी के बीच में एक नाव चल रही है जिसमे एक नाव में बैठा हुआ व् एक नाव चलाता हुआ दिख रहा --

यहाँ सामने कोई पिकनिक स्पॉट दिखाई दे रहा है जो चारो तरप हरियाली से घिरा हुआ है और बोहोत ही सुन्दर लग रहा है।

एक लड़का दूल्हा की ड्रेस पहना हुआ है उसने कथा टोपी और दूल्हे का परिधान पहना है और वो बहुत सुंदर लग रहा है।